एक आदमी खड़ा हुआ है।

और सूरज भी दिखाई दे रहा है आसपास पेड़ पौधे भी है।

आसपास बोतले भी रखी हुई है।

इसके अंदर टेबल है दो कुर्सियां है।

यह एक पैलेस है इसमें बहुत खूबसूरत सजा रखा है और झीनके भी लगे हुए हैं।